यह एक सब्जी मंडी है यहाँ पर तरह-तरह के सब्जियां मिलती है यहाँ पर हरी मिर्च लार्ज मी लाल मिर्च आलू गोभी पत्ता और भी बहुत सारे सब्जियां नजर आ रही है।

ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर खंबे नजर आ रहे है दूर पर एक युवा खड़ा हुआ नजर आ रहा है और एक गाड़ी लाल और सफ़ेद र--

यह एक ग्रंथालय है यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो की अखबार पढ़ रहे हैं यहां पर बहुत सारे अखबार रखे हुए नजर आ रहे--

यह एक चर्च है यहाँ पर क्रिश्चन्स लोग अपने जिसेस के आगे हात जोड़ने आते है इस चर्च का रंग नीला और सफ़ेद है।

ये एक कपड़ोंका मॉल है यहाँ पर बहुत सारे कपड़े नजर आ रहे है जो कि मर्द और औरत दोंनो के ही है यहाँ पर बहुत सारे लोग नजर आ रहे है।

ये एक कक्षा है यहाँ पर दो बोर्ड है जो की एक काले रंग का है और एक सफ़ेद रंग का है यहाँ पर बहुत सारे बेंचेस है और ये कक्षा पूरी तरह से खाली है।